यह दो बाइक भी दिखाई दे रही है एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

सब लोग अलग अलग रंग की हेलमेट पहना हुआ है।

बहुत सारे गोभी बेच रही है।

यह एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सुंदर सुंदर पेड़ दिखाई दे रही है।

यहां की सड़क बहुत सुन्दर है।

बहुत बड़ा सा दुकान दिखाई दे रही है।

बहुत सारे लोहे दिखाई दे रही है।

सीढ़ी के रंग ब्राउन रंग में है।

एक लड़का ने वाइट रंग की शर्ट पहना हुआ है।

ऊपर में बहुत सारे कपड़ा टंगा हुआ है।

इस तस्वीर में बहोत सारे मशीन दिखाई दे रही है।

एक बड़ा सा एरोप्लेन भी है वहां इंसान उठ रही है।

तीन लड़कों ने ब्लैक रंग की जैकेट पहना हुआ है।

ये तीन लोग पराठा खा रही है।

इंडिया की फ्लैग भी है।

लड़का ने वाइट रंग की शर्ट पहनाया हुआ है।

ब्रिंजल रंग के साड़ी पहना हुआ है।

इस तस्वीर में एक छोटा सा घर दिखाई दे रही है।

लड़की भी डांस करने रेडी होते हुए दिखाई दे रही है।

बहुत सारी लाइट जल रही है रेड रंग की।

एक स्लाइड लाल रंग की है एक स्लाइड ग्रीन और येलो रंग की है।

इस तस्वीर मे बहोत सारे दुकान दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में तीन बरे बरे घर दिखाई दे रही है।

खिड़की ब्लू रंग से पेंट किया हुआ है।

युज कर चुका हुआ बोतल दिखाई दे रही है।

सामने में एक घर दिखाई दे रही है।

ऊपर की टीना के रंग ब्लू है।

बिस्तर वाइट रंग है।